देखे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे एक पानी बोतल भी है।

दो व्यक्ति खड़े एक व्यक्ति आ रहा है एक व्यक्ति जा रहा है।

वो बच्चे के खेलने वाले है।

जिसमें पोस्टर में लिखा गया है जिसमें अरविंद पुस्तक भंडार एवं किराना दो जेनरेट स्टोर

में टेबुल पे रखा गया है ऐ_सी है।

जिसमें झंडा भी लगाया गया है।

देखने में बहुत सुंदर लग रहा बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रहे है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत फूलें लगाए हैं कुछ घासें दिखाई दे रहे हैं।

एक गाय भी दिखाई दे रहा है देखने में बहुत सुंदर है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

पानी टंकी भी खड़ा है जिसमें मकान भी फुल भी लगाया गया हैं।

एक व्यक्ति एक झोला

हेलमेट भी रखा गया है पर।

बहुत सारे टेबले है गिलासे जग --

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बालू भी दिखाई दे रहे हैं।